जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये राष्ट्रपति दिनकर जी की मूर्ति है जिनके यादें में जो ये की मूर्ति बनाई गयी है |

कवि दिनकर जी को जो है की राष्ट्रकवि घोषित कर दिया गया | दिनकर जी की कविता जो है काफी अनोखी होती है और इनके इन्हें पढ़ने में काफी ज्यादा मन लग जाता है| और ये जो कविता का काफी सुंदर तरीके से कविता लिखी गयी है।

ये सारे चीज मिल उपलब्ध करवाये गए हैं| यहाँ देखिये कम रुपए में देखिये अच्छी सारे भोजन मिल जाते हैं खाने के लिए |

जैसे की हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ एक बहुत बड़ी बिलडिंग नजर आ री और यहाँ देख रहे हैं इसमे जो वस्त्रालय मिल रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि बहोत यहाँ जो है कि एक रोड है। और--

जैसा की हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ जो है कूरियर पार्सल ऑफिस है यहाँ जोकि कोई डाक जगह की पार्सल होती है वहाँ देख रहे हैं लोगो की कितनी ज्यादा भीड़ है। कोई--